यह एक पानी की टैंकर जैसा बना हुआ है जो कि स्टील का बना है यहां तीन व्यक्ति खड़े हैं एक व्यक्ति नीड के काम कर रहा है दो व्यक्ति उरे खड़े हैं।

जस्ट आगे दो तस्वीर लगी है और नीचे तीन काउंटर है नीले कलर की कुर्सियां हैं।

यह दृश्य एक स्टार बैडमिंटन अकादमी के बाहर की पिक्चर है।

जो ऑरेंज कलर की पट्टी में वाइट अक्षरों से नाम लिखा हुआ है और उसके जस्ट बगल में दो व्यक्तियों का पोस्टर लगा है।

एक ए_सी लगी है और एक ब्लैक कलर का टैंक रखा हुआ है।

नीचे एक स्कूटी खड़ी है और मैन गेट के आगे दो बाइक खड़े हैं छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

यह पिंक कलर की लीची है और हरे कलर के पत्ते भी देख सकते हैं।

यह एक ज्वेलर्स की शॉप है जिसका नाम है हरिओम ज्वेलर्स एंड जनरल स्टोर ।

और अंदर लाल रंग का टेडी बियर लटक रहा है।

यह एक कपड़ों की दिकान है जो अंदर से देखने में काफी सुंदर लग रही है। दुकान के ऊपर एक बड़ी ए_सी लगा रखी --

और पीछे ईंटों से चुनी हुई दीवार है एक पिलर है।

और नीचे ईंटों से बिछाई हुई आर_सी_सी वगैरह।

और बांध के लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा पेड़ है जो की हरी भरी पत्ती से खिला हुआ है।

पोस्टर के ऊपर गोल्डन और ऑरेंज कलर की पट्टी खींची है जो की सजावटी बढ़िया अच्छी लग रही है।

और नीचे नीले कलर की चटाइयां मैट बची हुई है।

यह एक नई जिम की तस्वीर है जिसमें देख सकते हैं ट्राइसेप बाइसेप चेस्ट थाई एब्स सभी के लिए अलग अलग अच्छी मशीने हैं।

सोफे का कलर नीला है और उसके पीछे दीवार पर फूल फूल से पेंट किया हुआ है।

यह एक घर के अंदर हॉल का पिक्चर है जिस--

यह एक लेडर्स पैराडाइस लाइब्रेरी की पिक्चर है जो कि एक बैनर पर लिखा हुआ है यहां एक बड़ा गेट है जिस पर लिखा हुआ है तक्षशिला एकेडमी ।